मुझे इस तस्वीर में बहोत सारी मिल रहा है।

फिर कुछ फ्लावर फूल पॉट में भी देखने में मिल पा रहा है।

और इस घर के आगे में एक वाइट कलर की गेट बनाया हुआ है।

और भी एक स्कूटी देखने को मिल पा रहा है।

और इस घर में एक फ्लावर पॉट भी देखने को मिल रहा है।

ये एक बड़ी सी घर भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में भी एक फैन लक्का हुआ है।

मिडिल में भी कुछ ब्लैक कलर की सामान रखने के लिए दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में वाइन शॉप दिखाई दे रहा है।

फिर दूसरी साइड में एक बहुत सारी पहाड़ भी देखने को मिल रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक नदी देखने को मिल रहा है।

फिर मुझे यहां में बहुत सारा नारियल पेड़ भी दिखाई दे रही है।

ए कुछ रस्सी से बंधा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में पांच आदमी दिखाई दे रहा है।

सब लोग दागदर कि कपड़े पहने हुए हैं।

अभी सब लोग चेयर में बैठे हुए हैं मिडिल में टेबल रखा हुआ है।

और इस टेबल के ऊपर में बहुत सारे सामान पेपर और कागज सब रखा हुआ है।

और ग्रीन कलर का है।

और फिर ऊपर में वायर भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में कीर्ति योग लिखा हुआ है।

और इस लड़के के फेस को ढका हुआ है।

मुझे इस पिक्चर में कुछ बच्चे क्लास लेती हुई दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक छड़ी देखने को मिल पा रहा है।

और टेबल भी व्हाइट कलर की बनाया हुआ है।

पानी के ऊपर में भी बहुत सारी मिट्टी भी देखने को मिल रहा है।

मिट्टी के ऊपर में भी बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रहा है।

और बिस्तर में एक बड़ी सी ब्लैक कलर की बैग भी रहा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में लड़की अपने नई गाड़ी लेते हुए दिखाई दे पा रहा हैं।

और इस बीच ब्रिज के संग में बहुत सारे पत्ते सब भी दिखाई दे रहा है।

और इस रूम की वॉल के ऊपर में बहुत सारे डिस्को लाइट लगा हुआ है।

साइड में दो ए_सी भी दिखाई दे आ रहा है।

बाइक भी एक पार्किंग करके दिखाई दे रहा है।

वायर भी देखने को मिल रहा है।

पे एक वाइट कलर की गाड़ी देखने को मिल पा रहा है।

एक टीचर समझाती हुई दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे चीज घुमाने के लिए भी देखने को मिल पा रहा है।

आसमान भी पूरा वाइट ब्राउन में दिखाई पा रही है मुझे।

मुझे इस पिक्चर में एक लंबी सी देखने को मिल पा रहा है।

और फिर इस घर को व्हाइट कलर के टीना से कवर किया हुआ है।